जिम कर रहे हैं एक लाइटे लगी हुयी हैं व्हाइट कलर और स्काई ब्लू कलर की दिवार है। पोस्टर्स लगे हुए हैं लाइट --

हे बेग-बेग्स रखे उनके पोस्टर्स लगे हुए है एक ल एक व्यक्ति जो कुर्सी पे बैठ के उनको पढ़ा रही है बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन ले रही पीछे साइड रोड है पोस्टर्स लगे है।

यह बचे जो आर्ट एण्ड क्राफ्ट करना सीख रहे हैं अलग-अलग टेबल पर अलग-अलग बचे बैठे हैं। उनके पास कागज पेपर खिड़किया गई हुई है कुछ सो रहे हैं।